हमे बोहोत बडा पहाड़ नजर आ रहा हे ओर बोहोत सारे हरे-भरे जाडे दिखाई दे रहे हे और खाली समेधरी दिखाई दे रही हे और--

वहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है और उसमें बहुत सारे गड्डे नजर आ रहें है और उसमें बहुत सारा पानी एकदम दिख रहा है।

और बहोत सारे खाली जमीन दिखाई दे रही है और बहोत सारी बिल्डिंगों मे घर दिखाई दे रहे हैं बहोत सारी खिड़किया नजर आ रही है और बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक लाल कलर की मंदिर टाइप कुछ दिखाई दे रहा है और ऊपर सोने का मुकुट दिखाई दे रहा है।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

और हमे पंखा दिखाई दे रहा है और बहुत सारे फूल नजर आ रहे है और बहुत सारे पैकेट दिखाई दे रहे है और बहुत सारे बोक्से नजर आ रहे है और एक स्टूल दिखाई दे रहा है।

यहा पर एक बाल काटने की दुकान दिखाई दे रही है और उसमें बहुत बड़ा सी आईना नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत बड़ी सड़क दिखाई दे रहे है और बहुत बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे है जिनका कलर नारंगी और व्हाइट दिखाई दे रहा है।

एक नीले कलर का बैग दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पथ्थर नजर आ रहे है। और एक आदमी दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर बहुत सारी दुकाने नजर आ रही है बहुत सारे कलर के फुगे दिखाई दे रहे हैं जिसमें सफेद कलर पीला कलर और लाल कलर दिखाई दे रहा है और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है।

शॉप दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे फल रखे हुए हैं काले कलर के नींबू रखे हुए हैं।

बहुत बड़ी जमीन दिखाई दे रही है और बहुत बड़ा रोड दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ी जे-सी-बी मशीन दिखाई दे रही है।

इतना सारा बोहोत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा हे ओर एक बोहोत छोटा स झोंपड़ा नजर आ रहा हे ओर एक पानी का बोहोत बड़ा फुव्वारा दिख रहा हे ।

बोहोत बड़ी गली दिखाई दे रही हे ओर बोहोत सारे खेत नजर आ रहे हे ओर बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हे ।

यहां पर बोहोत बड़ा कमरा नजर आ रहा हे ओर यहां पर बोहोत सारी बुक दिखाई दे रही हे बोहोत सारा कबाट नजर आ रहा हे ।

सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही हे कथ्थाई कलर की गाड़ी दिखाई दे रही हे बोहोत सारी बाइक खड़ी दिखाई दे रही है बोहोत सारे खम्बे नजर आ रहे हे ओर बोहोत सारी दीवारे दिखाई दे रही हे ।

बड़ी लाइब्रेरी की दुकान नजर आ रही हे बोहोत सारी बुक दिखाई दे रही हे बोहोत सारी किताबें नजर आ रही हे ।

ऊपर एक बहुत बड़ा कमरा नजर आ रहा है और बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे पंखे नजर आ रहे हैं बहुत सारी लाइटें नजर आ रही है।